कहीं का फील्ड है। फील्ड बहुत बड़ा है। इसमें बच्चे खेल रहे हैं। इसमें लाइट जल रहा है। बहुत ही बड़ा फील्ड है। यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। छोटे-छोटे बगल-बगल पेड़ भी हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और लाइट भी जल रहा है। बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है।

ए पार्क है। पार्क देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसपे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ खेलने वाला बहुत सारा सामान है। झुला वगैरह है। सरकने वाला है बच्चे सरक रहे हैं। सब बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा-बड़ा बहुत बड़ा पार्क है बहुत सुंदर है देखने में सुंदर ल --

बहोत ही बडा कही का अअअअ मंदिर जैसा मस्जि मस्जिद है। बहोत ही अच्छा है। बहोत बड़ा है मस्जिद। छोटा-छोटा यहाँ खम्बे दिख रहे हैं। अगल-बगल बहोत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि --